यह दुकान में बहुत से प्रिन्ट की साड़ियां भी है।

यह घर बहुत ही पुराना घर लग रहा है क्योंकि यह घर चारों तरफ से टूट-फूटा है।

यह कॉफी की रेट एक ग्लास के बीस रूपये पड़ते है।

यह एक कॉफी शॉप है।